और ये सम साथ साथ में किनारे किनारे पर पेड़ पौधे लगे हुए नजर दिखाई दे रहे है।

एक सामने गली जाती हुई नजर आ रही है यहां पे जो व्यक्ति खड़ा है उसनें ब्लैक रंग की पैंट --

मेरे को हर जगह पेड़ पौधे फल फ्रूट दिखाई फूल दिखाई दे रहे हैं।

और सारी की सारी ब्रांड न्यू बाइक और एक्टिवा दिखा दे रही है चारों तरफ।

यहां पे बहोत सारे बोर्ड और बोर्ड भी लगे हैं अच्छी खासी लाइटिंग लगी है चारों तरफ--

ये पिक्चर एक गुरुद्वारे के या मस्जिद या मंदिर के बाहर से ली गई है।